दिखाए गए तस्वीर में काफी महिलाँए योगा करते हुए देखि जा सकती हैं।

यह सब किसी बंद कमरे में योगा कर रही हैं।

दिखाया गया तस्वीर यूनीअन बैंक के ए.टी.एम. का है और इसके बगल में यूनीअन बैंक का ब्रांच भी है।

इस फोटो में किसी घर का फोटो हैं जिसके दीवाल पर काफी सारी फोटोए लगाई गयी हैं।

इनके साथ एक-एक बॉल भी रखा गया है।